देखने में बहुत ही स्ट्रोंग लग रहा है।

और मुझे रोज पसंद है यहाँ पे येलो कलर के भी बहुत सारे फूल है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

और शायद ठंड का मौसम है तो एक अंकल ने स्वेटर भी पहना है और एक ने ये जैकेट भी पहना है और एक अंकल जो है जिन्होंने येलो कलर का --

और मस्जिद जो बहुत अच्छा है और सुन्दर दिख रहा है इसका पेंटिंग भी बहुत अच्छे से किया गया है।

और यहाँ पे और भी बहुत सारे बड़े-बड़े पत्थर हैं और बहुत सारे पेड़-पौधे हैं जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं सुन्दर लग रहा है ।

और फल हमारे लिए हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और एसे बहुत सारे फल है जो खाने में बहुत टेस्टी होता है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है।

ने की जो मिर्च बहुत ही सस्ता हो सकता है क्या बहुत सारे कद्दू-वड्डू पर मिर्च सबसे सस --

बस दिख रही है बस के एक अंकल है और उस साइड में एक बस है एक ऑटो है जो दिखने में बहुत अच्छा है बस बाले अंकल कहीं पे जा रहे है जो दिखने में बहुत अच्छा है बहुत सुंदर है।

और यहाँ पे जो चर्च के ऊपर बहुत सारे बैलून्स से सजाया गया है पिंक वाइट ब्लू बोहोत सारे कलर के है और यहाँ पे चर्च वाले जो है फादर भी है पीछे मे और सब चर्च में बैठे हुए है। फादर कुछ बोल रहे है वो सब ध्यान से सुन रहे है चर्च मे --